फोर्स सिक्योरिटी एंड मैनपावर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड है।

एक गाड़ी सफेद कलर की है बराबर में एक नेक्सा सर्विस का शोरूम है।

बेंचे भी पड़ी हुई है उन बेंचो पर कुछ गिलास रखे हुए हैं।

तस्वीर में कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

तस्वीर में गेट के बाहर एक आदमी बाइक पर दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

उसके बराबर में एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है।